दुकान के दीवारों का रंग सफेद है और फर्श का रंग भूरा।

एक व्यक्ति माइक पकड़ कर संचालन कर रहा है।

मूर्ति के समक्ष कुछ लोग बैठे हुए हैं।

इस कमरे में एक टी_वी भी लगा हुआ है।

एक इमारत के ऊपर काले रंग की कई पानी टंकियां रखी हुई है।

यह धूसर रंग का है।

साइकिल और कसरत करने का सामान क्रम में सजाया हुआ है।

यह हुंडई का कार शोरूम है।

उसके ऊपर भगवान की मूर्ति रखी हुई है।

यह दृश्य एक दुकान का है।

यहां बहुत सारी लाइट लगा हुआ है।

टेबल में एक ओवन भी रखा हुआ है और बहुत सारे डब्बे रखे हुए हैं।

इस कैफे का नाम बेस्ट टेस्ट मोमो है।

वहीं बगल में एक दुकान है जिसमे कुछ लोग खरीद बिक्री कर रहे है।

बोर्ड में कुछ उर्दू में लिखा हुआ है।